फोटो में सामने एक बोर्ड लगा हुआ--

बोर्ड व्हाइट कलर का है।

यह ग्राउंड का फोटो है।

ट्रैक्टर के राइट साइड में एक और बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

दीवाल के पीछे खजूर का पेड़ दिख रहा है और भी बहुत सारा पेड़ है।

दो द्वारपाल भी दिखाई दे रहे जो येलो कलर का कपड़ा और पिंक कलर का टोपी पहनी है।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है।

इसमें कुछ ज्वेलरी सामने दिखाई दे रहा है।

और दूसरे साइड में किसी की तीन उंगली बस दिखाई दे रहा है।

सेनेटरी पैड इत्यादि समान दिखाई दे रहे हैं।